यहां रात का समय प्रतीत हो रहा है यहां बहुत सारी राखियां लड़की हुई नजर आ रही है जो राखी के दिन बचा जा रहा है।

यह तस्वीर किसी औद्योगिक तथा निर्मल स्थल की लग रही है।

यह तस्वीर एक जिम के अंदर की है जिम के अंदर बहुत सारे लोग में है।

यह पार्क देखने में बहुत ही सुंदर तथा आकर्षित लग रहा है।

यहां बहुत सारे बड़े बड़े चट्टान नजर आ रहे तथा यहां छोटी छोटी घास भी दिखाई दे रही है।

यहां बहुत सारे लोग टहलते हुए नजर आ रहे हैं।

यह तस्वीर किसी रेस्टोरेंट के अंदर की रेस्टोरेंट के अंदर कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है।

पंडाल के बगल में बहुत ही सारे अनेकों प्रकार के फूल तथा पौधे लगे हुए--

यहां बहुत सारे मजदूर काम करते हुए नजर आ रहे हैं।

इस तस्वीर में आसमान बहुत ही साफ सुथरा दिख रहा है।

यह एक महिला जगह को साफ करते हुए दिखाई दे रही है।

इस कार्यालय में बहुत सारी कुर्सियां लगी हुई है।

पृष्ठ भूमि में हरी बैलून से सजा हुआ एक शानदार ढांचा नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में बहुत ही बड़ी बड़ी चट्टानी नजर आ रही है।

इस तस्वीर में साइकिले कतार में खड़ी नजर आ रही है।

इस तस्वीर मे एक ईमारत दिखाई दे रहा है इमारत के ऊपर बहुत सारे कांच के ग्लास लगे हुए हैं।

यह एक दर्पण भी नजर आ रहा है तथा यहां कुछ ईश्वर की फोटो लगी हुई नजर आ रही है।

इस बेडरूम में लाइट पंखे कुर्सियां बोतले रखी हुई नजर आ रही है।